यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है जोकि छठ माता की पुजा कर रही है और उनके पास मे एक अ गन्ने का वो भी है और काफी अपने बास्केट मे काफी फ्रूट्स और प्रशाद लाई है।

यह एक टाइप का लग रहा है जहा पर बहुत सारे बच्चों की स्विंग्स लगी हुए है जो की टेम्परेरी है नीचे ग्रीन कार्पेट भिछ रहा है बहुत सारे लोग है यहा पर बहुत लोगों की भीड़ है यहा पर जमा है।

यहा पे स्कूल है स्कूल मे काफी सारे बच्चे है जो की एक साथ ग्रुप मे बैठे हुए है और यहा पर सिस्टर है जो की इन सबको चेक कर रही है सबके पास अपना अपना मटेरियल है सब अब कुछ ना कुछ से आर्ट अँड क्राफ्ट बना रहे है।

यह एक स्कूल का दृश्य है। जहा पे सारे बच्ची बैठी है। और वो अपनी लाइन मे बेठे है। सब अपना अपना वर्क कर रहे है। और गॅप बना हुआ है। जेसे कोई किसी का ना कॉपी कर पाई।

यहा कूच क्रिएटिव बनाने को बोला गया है और यहा पर आ इन्सट्रक्शन दिये गए है आ सब एक ही लाइन मे बैठकर सब अपना-अपना वर्क कर रहे है।

और उसके आसपास पैड पौधे दिख रहे है। एसा लग रहा है। कंस्ट्र कंस्ट्रक्ट वर्क है। कंस्ट्रक्शन की साइड का वर्क लग रहा है। और यह सिटी के आउटस कटस मे लग रहा है। यहा एक आदमी जो इसकी फोटो ले--